एक खंबे (खंभे) और लाइटिंग लैम्प लगा हुआ है। एक नीले-काले कलर के कपड़े पहने हुए आदमी चल रहा है। दो आदमी साइड से चल रहे हैं और सामने मकान घर बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में एक रोड नज़र आ रहा है। जिस पर सफ़ेद और नीले से रंग का पैंट पहने हए आदमी दिखाई दे रहा है। एक --

जो नीले पीले लाल कलर की है एक रेसिग अ रेस करने का जो ग्राउंड होता है उस नज़र आ रहा है।

ये फोटो इनडियन ऑइल का है जिस पर लोग पेट्रोल भरवाते हुई नज़र आ रहे हैं सामने एक स्कूटी पर लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं एक लड़की मोटरसायकल से आई हुई है।

और पास में ये बिल्डिग है और एक ट्रेन मॉल गाड़ी जाती हुई दिखाई दे रही है जिस पर पिले कलर के छोटे छोटे ओटो रिक्सा भी चल रहे --

सामने एक पेड़ सामने बहोत सरे पेड़ पौध नज़र आ रहे रहे है| ग्राउंड की बाउंड्री भी दिख रही है।